उसके निचे काले अक्षरों में जगल शिकारी उफ गोरखपुर लिखा है निचे पुरानी सी सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है बड़ा सा काला गेट है।

नीले रंग का बड़ा सा गेट है अंदर एक सफेद रंग की कार है सफेद रंग का बड़ा सा घर है।

एक आदमी बैग पकड़ा है व एक आदमी सादा खड़ा है।

हरा भरा बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड पे देर सारी साइकिलें इधर उधर खड़ी है ग्राउंड में कुछ हरे भरे छोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ है।

भूतल ब्लड बैंक डेंटल सर्जेरीक विभाग लिखा हुआ है

एक बड़ा सा हरा ग्राउंड है। जिसमें एक बड़ा सा लाइट का खंभा है। हरे भरे पेड़ हैं। छोटे --

ऊपर को बड़े-बड़े ढेर सारे पेड़ हैं।

आईएनऔएक्स कर के बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लिखा हुआ है काले रंग और सफ़ेद रंग की लाइटनिंग है।